नृत्य कर रही हैं एक नीचे मैट बिछाई हुई हैं।

और इस रूम में भी ऊपर फैन लगा हुआ हैं।